इस खेत के आसपास बहुत सारे पेड़ भी दिख रहा है जो ग्रीन अँड ब्राउन कलर का दिख रहा है और कुछ तार सेभी खिचे हुए दिख रहे है।

इस चित्र मे जो फूलो की मालाये दिख रही उन मालाओ मे यो फूल है वो ग्रीन ऑरेंज रेड --

दुकान मे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है कुछ खंबे भी रखे हुए है और कुछ खुर्चीया भी रखी हुई है जो रेड कलर की दिख रही है इस दुकान मे एक बॉय भी दिख रहा है।

इन दुकानो के आसपास बहुत सारे लोग भी दिख रहे है। इन दुकानो के अ आसपास बहुत सारा सामान भी दिख रहा है।

इस चित्र मे जो दुकाने दिख रही है उन दुकानो मे बहुत सारा सामान रखा हुआ है इन दुकानो के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक सा भी दिख रहा है इस दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है वो--

इस बिल्डिंग मे कूछ दुकाने भी दिख रही है इसके आस पास कुछ पेड़ भी है कुछ कार भी खड़ी हुई है कुछ बाइक भी खड़ी हुई है और उसके आस पास कुछ लोग भी दिख रहे --

इसके आस-पास जो बोर्ड लगे हुए है वो ब्लॅक अँड ब्लू कलर के है। कुछ गाडिया भी खडी हुई है और इस-इस बिल्डिंग के आस-पास कुछ पेड भी दिख रहे।

पंखा भी लगा हुआ है जो ब्लॅक कलर का दिख रहा है इस दुकान में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

दुकान मे लाइट भी लगी हुई है पंखे भी लगे हुए है दुकान मे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है कुछ बॉक्स भी रखे हुए है।

इनके आसपास कुछ पेड़ भी दिख रहे जो ग्रीन अँड ब्लॅक कलर के है इनके आसपास कुछ खंबे भी दिख रहे है और बहुत सारी गाड़िया भी दिख रही है और कुछ लोग भी दिख रहे है।